और इस रूम की दीवारें व्हाइट कलर में हैं और इसमें ब्राउन कलर के पर्दे लगे हुए हैं।

ये एक कपड़ों की शॉप है जहां लड़कों के लिए थान वाले कपड़े मिलते हैं।

इस शॉप में कुछ चेयर्स रखे हुए हैं कुछ टेबल्स हैं एक फैन रखा हुआ है।

एक रैक है जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई है।

इस रैक के सामने टेबल रखी हुई है और--

रैक बने हुए हैं और उन रैक्स में छोटे छोटे--

इस फोटो में एक डाकघर का चित्र दी--

पौधे लगी हुई है और कुछ बड़े वाले पौधे लगे हुए--

नी झरने के रूप में नीचे आ--

नीचे एक नदी बनी हुई है और इसमें कुछ लोग नहा रहे--

इस फोटो में एक स्वीट का दृश्य दिखाया हुआ है।

जिसमें पानी झरने के रूप में बह रहा--

इस फोटो में एक रूम दिखाया हुआ है।

और उस बेड के बीच में--

जिसमें झूले लगे हुए हैं जिसमें बच्चे झूल--

बीच में एक स्टेज बना--

इस फोटो में एक बड़ा सा तालाब है।

और यहाॅं का फ्लोर ब्लैक --